ये हैं ओ पी गुप्ता क्लिनिक डॉक्टर अखिलेश गुप्ता --

यह जो आप देख रहे है यह सब्जी मार्केट है। ये यहाॅं पर केला फ़ल्म सब सभी प्रकार के सामान देखने जो यहाॅं पर मिलता है प्राप्त होता है।